सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और इस कार्यालय के आगे एक --

नीम का पेड़ है लगा हुआ दिखाई दे रहा है और नीम के पेड़ के पास एक और भी पेड़ लगा हुआ है।

ये एक सामने बहुत बड़ी पुस्तक की किताब है हम यहां पर कोई भी तरह की पुस्तक लेना चाहें तो ले सकते हैं।

और इनको देख लग रहा है यहां पर खाने की व्यवस्था उपलब्ध है।

कई तरह की तस्वीरें लगी हुई है और इसमें देख कर बड़ी बड़ी मशीनों को देख कर लग रहा हुआ है कि कोई प्रिंट आउट की भी मशीनें हो सकती है।

सी भी आई हुई है कोहरा छाया हुआ है और काफी सारे लोग इस कोहरे में ठंड में जैकेट पहने हुए हैं और कुछ लोग --

ग्लास फूटे होते हैं वो नहीं लगाए जाते हैं और हर प्रकार के चित्र व किसी भी प्रकार के यहां पर फोटो मिलने की सुविधा उपलब्ध लग रही है।

इस होटल को या इस दुकान को देखकर लग रहा है यह--

यह गुजिया व मिठाई की दुकान है और काफी बड़ी दुकान है क्योंकि इसमें ऊपर जाने की भी सुविधा उपलब्ध है हमें सामने --

काफी आलू है। इन आलुओं को सब्जी बनाने से पहली धोने की जरूरत है।

इस जगह को देखकर लग रहा है कि यहां पर तीन चार दोस्त आए हुए हैं और एकजुट होने का वादा कर रहे यानी कोई नए अभियान का --

इस जगह को देख कर लग रहा है कि यह एक घूमने की जगह है और घूम कर यहां पर विश्राम कर सकते हैं यह एक होटल बना हुआ है।

और इस होटल के आगे जो गेट लगे हुए हैं उनके आगे शीशे लगे हुए हैं शीशे का एक ए_सी रूम है।

और इस जगह पर बारिश भी आई हुई लग रही है काफी पानी सा नजर आ रहा है और काफी सारी --